उम्म एक आदमी खड़ा हुआ है सामने कुछ पटाके जला रहा है उसकी दूसरी तरफ और कुछ औरतें खड़ी हुई है सफेद कपड़े पहने हुए हैं साइड में एक पिकअप खड़ी हुई है।

आजू बाजू पेड़ दिख रहे हैं ऊपर कुछ लगी हुई है बिजली के तार दिख रहे हैं ।